और लाइट का तार सब है। बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब भी है। पेड़-पौधे सब भी हैं। रोड पे जाम लगा हुआ है। लड़की भी बाइक चला के आ रही है। एक लड़की बाइक --

यहाँ पे कंप्यूटर का दुकान है शायद ये नया खुला हुआ है यहाँ बहुत सारा बेलून से सजाया हुआ है एक कंप्यूटर चल रहा है शायद दीवार में है और एक मंदिर भी है और एक पोस्टर लगा हुआ दो पोस्टर लिखा हुआ ऊपर में बड़ा और छोटा बोर्ड --

और एक पोस्टर लगा हुआ है। बहुत सारा पेड़ सब है। आगे में भी एक इंसान खड़ा हुआ है पीछे में भी इंसान पकड़ा हुआ है।

कुर्सी है नीचे में बहोत सारा झाड़ू भी है |

और ऊपर में एक लड़की है।